installation of drupal पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम उबंटु और windows operating systems पर drupal को download और install करना सीखेंगे
इस tutorial के लिए आपके पास वेब से नए वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए या आपके पास आवश्यकतानुसार लोकल फाइल्स होनी चाहिए
आपके पास machine होनी चाहिए जिस पर उबंटु लिनक्स या windows operating system installed हो
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आप उल्लेखित operating systems के साथ परिचित होने चाहिए
drupal को install करने के कई तरीके हैं
इस tutorial के लिए मैं bitnami drupal stack का उपयोग करुँगी क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए यह बहुत ही सरल विधि है
bitnami drupal stack को install करने के लिए आपको intel x86 या compatible processor
ram से ram 256 mb ram
कम से कम 150 mb hard drive space और
tcp/ip protocol support की आवश्यकता है
निम्न compatible operating systems हैं
कोई भी x86 लिनक्स operating system
कोई भी 32bit operating system जैसे कि windows vista windows 7 windows 8 windows 10 windows server 2008 या windows server 2012
कोई भी os x operating system x86
अपने पसंदीदा web browser को खोलें और दिखाए गए url पर जाएँ
नीचे scroll करें और windows और लिनक्स operating systems के लिए installers देखें
आपको अपने operating system के अनुसार installer चुनना है
जैसे कि मैं लिनक्स यूजर choose इसलिए मैं linux installer चुनुंगी
यदि आप windows यूजर हैं तो windows के लिए drupal installer चुनें
यहाँ हम drupal के विभिन्न versions देख सकते हैं
यदि आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहें कि किस version को download करना है तो आप recommended version को download कर सकते हैं
इस recording के समय drupal 813 recommended version है
यह अलग हो सकता है जब आप इसका अभ्यास कर रहे हों
दायें हाथ की ओर download button पर click करें
bitnami website में account बनाने के लिए एक popup window खुलती है
अभी के लिए no thanks पर click करें
तुंरत ही यह installer को डाउनलोड करना शुरू करता है फाइल को सेव करने के लिए ok button पर click करें
निम्नलिखित installation steps windows और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए समान है
यदि आपके पास bitnami installer files हैं तो डाउनलोड करने के बजाय उनका उपयोग करें
अपने downloads folder को खोलें जहाँ installer file downloaded हुई है
इस installer file को रन करने के लिए हमारे पास admin access होना चाहिए
यदि आप windows यूज़र हैं तो installer file पर right click करें और फिर run as administrator विकल्प चुनें
यदि आप लिनक्स यूज़र हैं तो installer file पर right click करें और properties पर click करें
फिर permissions टैब पर click करें औऱ allow executing file as program विकल्प के checkbox पर click करें
window को बंद करने के लिए close button पर click करें
double installer file पर double click करें
अब installation शुरू हो गया है next पर click करें
यहाँ हम components को चुन सकते हैं जिन्हें हम install करना चाहते हैं
प्रत्येक component पर click करें और पहले उनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ लें
मैं सभी components को प्राथमिकता दे रही हूँ next button पर click करें
इस window में हमको folder चुनना है जहाँ हम drupal को install करना चाहते हैं
मैं home folder चुनुंगी
windows में यह default रूप से c colon या main drive में installed होगा
next button पर click करें
अब हमको drupal admin account बनाना होगा
मैं अपना वास्तविक name priya type करूँगी यह name application में प्रदर्शित होगा
कृपया यहाँ अपना name type करें
email address में मैं priyaspoken @gmail com type करूँगी
कृपया अपना सही email address टाइप करें
अब हमको administrator के लिए अपना username और password देना होगा
login यूजरनेम में मैं admin type करूँगी
password में re password type करूँगी पुष्टि के लिए password को फिर से type करें
आप अपने अनुसार कोई भी login नेम या password type कर सकते हैं
next button पर click करें
लिनक्स में apache के लिए default listening port 8080 है और mysql के लिए यह 3306 है
windows में यह 80 और 3306 है
यदि ये ports पहले से ही किसी अन्य applications द्वारा उपयोगित हैं तो यह उपयोग करने के लिए अन्य वैकल्पिक ports का संकेत देगा
मैंने पहले से ही अपनी machine में mysql installed किया है तो यह एक वैकल्पिक port के लिए संकेत देगा
मैं 3307 दूंगी
next button पर click करें
अब हमको अपने drupal site के लिए name देना है मैं drupal 8 name type करूँगी
आप अपने अनुसार कोई भी name दे सकते हैं
next button पर click करें
यहाँ यह हमें bitnami cloud hosting के लिए पूछता है अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए
इसलिए इसे अचयनित करने के लिए चेकबॉक्स पर click करें
फिर next button पर click करें
drupal अब installed के लिए तैयार है next button पर click करें
installation पूरा होने में यह कुछ समय लेगा
एक बार जब installation समाप्त हो जाता है तो सुनिश्चित कर लें कि launch bitnami drupal stack checked है
फिर finish button पर click करें
bitnami drupal stack control window स्वतः ही खुलती है
आगे देखते हैं कि bitnami drupal stack control window को access कैसे करते हैं
यदि आप लिनक्स यूजर है तो कृपया इन steps का अनुसरण करें
file browser पर जाएँ
फिर बायें sidebar में places के नीचे home पर click करें
double सूची में से drupal hyphen 813 hyphen 0 folder पर double click करें
यहाँ आप manager hyphen linux hyphen x64 run file देखेंगे इसे खोलने के लिए इस पर double click करें
यदि आप windows यूजर हैं तो start menu> all programs> bitnami drupal stack> bitnami drupal stack manager tool पर जाएँ
bitnami drupal stack control window खुलेगी
जब भी आप drupal खोलते हैं तो कृपया check लें कि सभी servers कार्यरत हैं
सभी कार्यरत services को देखने के लिए manage servers पर click करें
यहाँ हम web सकते हैं कि अभी mysql database और apache web server कार्य कर रहे हैं
ध्यान दें कि drupal पर काम करने के लिए हमें database जैसे कि mysql postgresql या oracle की आवश्यकता है
और web server जैसे कि apache या nginx
default रूप से bitnami drupal stack mysql database और apache web server के साथ आता है
control window पर वापस जाते हैं
हम उपयुक्त buttons पर क्लिक करके services को start stop और restart कर सकते हैं
tab welcome टैब पर click करें
drupal को शुरू करने के लिए दाईं ओर go to application button पर click करें
browser bitnami पेज के साथ स्वत: रूप से खुल जाता है
अब access drupal link पर click करें हम अपने drupal website पर आ गए हैं
ध्यान दें कि website का name drupal 8 है
website पर login करने के लिए उपर दाईं ओर log in link पर click करें
अब अपना user name और password type करें जिसे हमने पहले बनाया था
अब login button पर click करें
address bar में हम अपनी website के web address को देख सकते हैं
अगले tutorial में हम /user/1 के बारे में सीखेंगे
localhost के बजाय यह आपको आपके system configuration के आधार पर 127001 दिखा सकता है
अगली बार से हम web address का उपयोग करके drupal को access कर सकते हैं localhost colon 8080 slash drupal या localhost slash drupal
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुँच गए हैं
संक्षेप में इस tutorial में हमने उबंटु लिनक्स और windows operating systems पर drupal को इंस्टॉल करने के बारे में सीखा
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें औऱ देखें
spoken tutorial team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद